सामने दुकान का कलर का पेंट पिंक कलर हो रहा है | साइड मे हरा हरा भी दिखाई दे रहा है | उसके आगे खड़ा हुआ है और मास्क व्हाइट कलर का मास्क लगा हुआ है | दो बाइक भी दिखाई दे रही है।

छत पे अ छत पे बहुत --

दिखाई दे रहा है और बोहोत बहु दूर तक पैड पौधे भी दिखाई दे रहे है और वो साई दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह कमरे में बहुत सारे म यह कमरे में वो सफेद कलर का पैंट हो रहा है और ये--

और लाइट की केबिल भी दिखाई दे रही साइकिल खड़ी हुई है और गाड़ी भी बहुत सारी खड़ी हुई है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।